यहां ट्रॉलियां पड़ी हुई है जो कि आदमी जिस आदमी ने ज्यादा चीजें खरीदनी हो वो इस ट्रॉली का इस्तेमाल करता है।

एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर मूर्ति की तस्वीर बनी हुई है और साथ में एक आदमी की तस्वीर है जिसने बड़ा चश्मा पहना हुआ है।

जिसमें बहुत सारी ज्वेलरी पड़ी हुई है सामने कुर्सियां पड़ी हुई और अंदर शीशे की मेज़ के अंदर बनी हुई है।

नर्सिंग व बंजर में बहुत सारे पौधे हैं जो कि बहोत खूबसूरत फूलों से भरे हुए है।

काले रंग की शर्ट भी काले रंग की है एक दूसरा आदमी जिसकी पीले रंग की शर्ट और नीले रंग की पैंट है।